यहाँ आदमी मन कोई झन तो चढेन ये रेल पटरी के --

और दीवाल में कुछ टाँगल है क --

उबेर तरका -तरका बाद्री रखे दिसत है